है जोकि गोल्डन कलर की दिखाई दे रही है और निचे की ओर --

ये वहा पर सामने ये व्यक्ति बैग लि लिए खड़ा हुआ है।

सोफा रखा हुआ है और जिसके पीछे बहुत ही सुंदर तरीके से डेकोरेटेड किया हुआ है।

रस्सी से छोटे छोटे पाउच जमाए गए है हुए है।

जैसा की आप इस फोटो में देख रहे है सामने की ओर रोड पर एक ऑटो खड़ा है।

बहुत ही सुंदर जाली की डिजाईन बनी हुई है जिसमे एक पोस्टर टंगा हुआ है और नीचे सामने की ओर बाइक्स खड़ी हुई है।

और कुछ बच्चे साइड में खड़े है और अम्म साइड अम बगल में--